यहाॅं पर एक डेयरी है और यहाॅं पर डेयरी डेयरी भी है और जिसमे कुछ और सामान पेप्सी वगेरा सब रखा हुआ है।

यहाँ पर बच्चों के स्कूली बच्चों का कॉम्पटीशन चल रहा है रंगोली कॉम्पटीशन चल रहा है जिसमें आ बच्चे रंगोली बना रहें हैं।

अ छोटे-छोटे बच्चे हैं जो की अ पेपर क्राफ्टिंग के द्वारा अ कुछ बना रहे है उन के साइड में एक बाउंड्री है जो की रेड कलर की बाउंड्री है।

उनकी बैक साइड में एक बैनर लगा हुआ है जो कि रेड कलर का है और उस पर कुछ लिखा भी हुआ है और इक ओर उनके साइड में लेडी है जो कि भर --

ऊपर से एक सिल्वर कलर की कर्टन्स लगी हुई है फ्लावर्स से डेकोरेट किया जा रहा हैकुछ लोग खड़े हैडेकोरेट करने के लिए इसको।